और ग्राउंड का पीछे में बहुत सारा घर है।

गेस्ट हाउस पत्ता से बनाया हुआ है।

दो ठो ग्रीन पौधा दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में फ्लोर का कलर ब्लू है।

यहां हमें बिल्डिंग का गेट भी दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में बहुत बड़ा फील दिखाई दे रहा है।

ए फील्ड में छोटा छोटा ग्रास बहोत है।

हमको यहां पे एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

रास्ता का साइड में बहुत सारा फुल लगाकर है।

मुझे यहां पर एक डाइनिंग टेबल दिखाई दे रहा है।

टॉप फ्लोर और छत टाइल से बना हुआ है।

बाउंड्री का वॉल वाइट कलर है।

और आदमी बहोत सारा है।

हमको यहां पे एक लाइक बल्ब दिखाई दे रहा है।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

हमको ये फोटो में एक स्लाइड दिखाई दे रहा है।

नीचे में भी बहुत सारा बच्चा है।

साइड में में एक आदमी का फेस ब्लर है।

आसपास बहुत सारा पेड़ पौधा है।

दूर में एक घर भी दिखाई दे रहा है।

अंदर में रेक में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

गेस्ट हाउस का छत ग्रीन कलर का है।

पब में बहोत सारा आदमी है।

अंदर में एक मोबाइल फोन भी रखा हुआ है।

यहाँ मे और एक घर है।

हमको यह फोटो में बहुत सारा सोफा दिखाई दे रहा है।

ग्रे कलर का कार्टन भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में बहुत सारा लड़की डांस कर रहा है।

मुझको यहां पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ है।

हमको आगे में दो ठो बाइक दिखाई दे रहा है।

और आगे में बजाज सेल लिखा हुआ है।

यह गए काला और व्हाइट कलर का है।

एक गाय को ग्रीन कलर का रस्सी से बांध के रखा है।